सामने बस खड़ी हुई है और व्हाइट कलर की तीन चार लोग उधर जा रहे हैसाइकिल खड़ी हुई है सुबह-सुबह लोग दिख रहा है।

सामने चर्च है चर्च के बहार मिस्टर लोग सेल्फिया ले रही है एक व्हाइट कपड़ो मे है बाकी सेम कपड़ो में है।